फाउन्टन के ब बाजू में एक ब्रिज दिखाई दे रहा है।

पेट्रोल पंप में लोग खड़े पेट्रोल भर रहे हैं।

और लड़के सफेद और कलर का पायजामा कुर्ता और रेड कलर का दुपट्टा बांधे हुए हैं।

इमारत फत्तर के बीचों-बीच बनी हुई है।

और एक कार भी नीचे रुकी हुई है।

यहाँ पर एक मंदिर भी दिख रहा है।

बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

गाड़ी पे बंदीपुर टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है।

हात से लगा हुआ है।

और एक पहा ढलवान भी दिखाई दे रही है।